एह एक टेक्नो वर्ड का एक दुकान है यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपना सामान मिल जाएगा हार चीज मिल जाएगा। वह--

मैं चली जाए बहुत ही अच्छा लग रहा हैं पूरा नाम बहुत चारों तरफ से बंद रखा हुआ हैंरस्सी से जिस से वो किनारे पे स्थिर --

बहुत ही बड़ा यह सामने एक पानी का जहाज नजर आ रहा है जिसे बैठके आप इस वादियों का आनंद--